और दीवार का कलर व्हाइट है।

ये एक बहोत बड़ी जगह है जिसमें बहोत सारे टेंपो खड़े हुए हैं।

और बहोत सारे गाड़ी खड़ी हुई हैं।

तीन लाइटें लगी हुई हैं।

यह एक चंद्र पैलेस है और पैलेस में बहुत सारी लाइटों से फूलों से डेकोरेशन की गई है।

और चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है।

चार ड्रम रखें हुए हैं एक जनरेटर रखा हुआ है।

और अंडे के पा सामने एक बहोत सारे हरा भरा घास उगा हुआ है।

और हरा भरा घास उग रहा है पेड़ पौधे हैं दो बच्चे हैं।

और चित्र बना रहे हैं।

चल रही हैं और एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

दो शीशे दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई है।